और लोग जो वहां पे खड़े हैं वो कपड़े खरीदने या बेचने के लिए खड़े हैं लोग आयंगे जायंगे--

और लोग जो वहाँ पे खड़े है वो कपड़े खरीदने या बेचने के लिए खड़े है। लोग आयेंगे जायंगे --

इसके सिवाय मैं अब क्या ही कहूँ --

और लोग जो यहाँ पे खड़े हैं वो कपड़े खरीदने और बेचने के लिए खड़े हैं। लोग आएंगे जाएंगे।

इसके सिवाय मैं अब क्या ही कहूँ ।